सभी जनरल स्टोर है यहाँ पर सारे सामान मिल रहे हैं बल्कि आप यहाँ आते हैं तो खाने के लिए पीने के सारे सामान है आलू के पापड़ चिप्स कोल्ड ड्रिंक अ इत्यादि है और देख सकते हैं काफी बड़ी दुकाने है और काफी अच्छी सर्विस है यहाँ की--

एक दृश्य है यह एक कैंपस है कैंपस को दृश्य पास से लिया गया है बहुत ही अच्छा कैंपस है बी.एच.यू आप जानेंगे की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अपने मन में बहुत बड़ा नाम है। यहाँ की पढ़ाई यहाँ की चीजें बहुत ही अच्छी होती है। बहुत सुंदर होती--

यह पोस्ट ऑफिस का दूसरा पे इससे जो बहोत बडा पोस्ट ऑफिस है मेन ब्रांच इस ऑफिस को कह सकते हैं यह वही है और यहां पर उससे रिलेटेड जो भी कार्य है यहां पर करवाए जाते हैं। काफी अच्छे यहां सुविधा यहां आपको मिलती हैं बहोत ही अच्छा --